इस चित्र में यह दर्शा रहा है कि बहुत कड़ी तेज धूप--

घर के सामने एक बालकनी भी है जिसकी रेलिंग काले रंग की है।

ये सारे लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं।

जो पेड़ों से सजे क्षेत्र को दिखाती है।

इस चित्र में एक तस्वीर में एक बार्बर शॉप का अंदरूनी हिस्सा दिख रहा है।

और एक गेट है जो कि अन्दर की तरफ भी किताबें रखे हुई है।